यहाँ पे हेयर कटिंग सैलून दिख रही है यहाँ पे बच्चा बाल कट हेयर कटिंग करवा रहे हैं।

आर्थ कॉफी स्टॉल कॉफी यहाँ पे कॉफी एक व्यक्ति कॉफ़ी पी रहे है एक मास्क लगा के बैठे हैं।

यहाँ प्राकृतिक एक दृश्य दिख रहा है उसमें पुल पुल के नीचे से नदी बह रही है उसपे पुल पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

दोनो खड़े हुए है एक दम आकर्षित चित्र लग रहा है यहाँ पे बहोत काफ़ी यहाँ पे कुछ पत्तिया लगी पत्तियां है यहाँ पे।

गेट खुला हुआ है और अंदर अपने पैसे निकासी और जाने के लिए सुविधाजनक के लिए वहाँ पे अपना काम कर रहे है।